यहां एक मकान की स्लैब दिख रही है।

और वाइट कलर की चेयर है और बहुत सारे लोग है इसमें पार्टी में --

और दो कबोर्ड टाइप के हैं और उसमें कोई सामान रखा होगा है डिब्बे टाइप का दो --

और बहुत सारे दिये भी लगे विए हैं ।

और पेड़ के अंदर में थोड़ा पानी दीख रहा है उस साथ में नदी जैसा --

यह एक दवाख़णा दिख रहा है वाइट कलर का उसमें कुछ डॉक्टर भी खड़े हैं दो मैड़म हैं ।

वो चित्र काय के हैं मालूम नहीं लेकिन हॉल में एक चियर है और--

ये एक बँक है यहाँ पे टु व्हीलर भी रखी भी है और लोगों की भीड भी लगी भी है और आप--

उसमें बहोत बच्चों के खेलने के सामान भी लगे हुए हैं।

निले पिले लाल कलर की और जिसको भी पसंद आएं वो कुर्तीया ले सकती हैं और वो मॉल भी व्हाईट कलर का है।

ये एक आउटएरिया है उसमें एक बिल्डिंग बनी हुई है । उसमें --

ये ये हॉल है हॉल में दीवार है दीवारों में लाल कलर लगा हुआ है बाजू मे --

बाजु में एक आदमी कड़ा है और सामने में हर्याली भी दिखरहि है गार्डन --

पार्टिया भी करते हैं इस लॉन का दर्वाजा एक गेट दिया हुआ है अ--